ये शौपिंग मॉल है।

यहाँ पे मछली मछली कटिंग कर रही है और उस का जो मटेरियल होता है उसे वहीँ पे बिखारा हुआ है मछली खाने में बहुत ही टेस्टी रहता है सेहत के लिए बहुत ही प्रोटीन है सभी लोगो को मछली खाना चाहिए।